जिसमें बहोत सारे अलग अलग तरीके के चश्मे रखे हुए हैं।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा--

इस क्वार्टर के बाजू में एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है।

तथा एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है।

जिसमें से कुछ ग्लूकोज वह फेसवॉश --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

इस नदी के ठीक किनारे एक बड़ी सी नाव--

जिस घर पर किनारे साइड दो लड़के भी खड़े हुए है।

आंगन में बहुत बड़े बड़े गमले में पेड़ पौधे भी रखे हुए हैं।

इस दुकान पर एक बहुत ही बड़े से रैक में --

इस फोटो पर एक बड़ी सी नदी--

इस फोटो पर एक बड़ा सा कमरा नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक--

मुझे इस फोटो पर एक रथ यात्रा नजर आ रही है।

तथा इस शोरूम के बाहर एक आदमी नीले रंग की शर्ट पहने खड़ा हुआ है।

इस आंगन पर बहुत सारे गमले भी लगे हुए हैं जिन पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बहोत सारे फूलों वेह मालाओं से सजा हुआ हैं।

इस सैलून पर बड़े बड़े कांच लगे हुए हैं।